यह एक बिल्डिंग है जहाँ बिल्डिंग के ऊपर दिवार पर डिजाईनिंग की गयी है तथा बोहत सारी अलमारियां बनी हुई है अलमारियों में कांच लगे हुए है सामने की तरफ बिजली का खम्भा लगा हुआ है उसके बगल में पेड़ ऊगा हुआ--